किराना स्टोर को दर्शय है और सामान टग रयो है।

एक आदमी मुंडा का ढाटौ बांध मेलो हैं।

ओ कादा को नालों हे झको बह रो है और इक माइन कादो आरो है हरे साइड क माइन हरी एक बगीची सी है।

हार्डवेयर की दुकान है बहुत सरो सामान पड़ियो है जेट मोटर साईकिल का टूल पार्ट्स पड़ा है।

दुकान साफ़ सूत्री है गन्दकी दर ही कोनी दो तीन टीपन पड़ा है।